इस इमेज में यहां पर सामने एक दुकान दिखाई दे रही है।

और ऊपर लाइट भी जलती नजर आ रही है।

यहां एक आदमी बैठा है उसके पास तराजू भी रखा --

यहां पर एक एक्टिवा भी खड़ी नजर आ रही है।

और कोलर भी नजर आ रहा है।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

इस इमेज में यहां पर एक नर्सरी दिखाई दे रही है।

बिरला मंदिर दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक काउंटर दिखाई दे रहा है।

एक पार्क दिखाई दे रहा है।

और बीच में एक स्टैचू भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।